कुछ फूल लाल है तो कुछ फूल पिंक है।

यहां पे तीन कारपेट लगाए गए हैं।

सभी योग कर रहे हैं।

पीठ के नीचे सभी के एक गोलाकार सा कुछ है।

इसमें बहुत सारे पंखे दिखाई पड़ रहे हैं।

चर्च के सिंबल भी बनाए गए हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं तो कुछ बच्चे पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

पीछे ईसा मसीह दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य में बहोत सारे पेड़ दिखाई पड़--

लाइन बाई लाइन कुछ बॉक्सेस का रंग ऑरेंज है तो कुछ का लाल है।

यहां इस दृश्य में चार टेबल दिखाई पड़ रही है।

जिनको डब्बे में के अंदर रखा हुआ है डब्बे का रंग सिल्वर है।

इस दृश्य में एक बाइक दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग बैंगनी है।

बड़ा सा पोस्टर है।

बहुत सारी बत्तियां दिखाई पड़ रही है जो अभी जल नहीं रही है।

अह बाल्टी रखी हुई है बाल्टी के बगल भी बहुत सारी सामानें रखी हुई है।

नीचे भी बहुत सारी सामाने रखी हुई है एक टेबल है टेबल का रंग ब्लैक है।

दो तीन फोन के डब्बे दिखे हुए हैं जैसे ओप्पो इंफिनिक्स वीवो पोको ।

इस फोटो में एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई पड़ रहा है।

यह बाल दाढ़ी के बाहर की फोटो है।

कुछ लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

शीशे के बाहर एक आदमी है जो कि हमारी ओर देख रहा है।

पेट्रोल लेने के लिए दो तीन बाइके भी लगी हुई दिखाई पड़ रही है बड़ा सा टी_वी दिखाई पड़ रहा है जिसमें कुछ चल रहा है।

पेट्रोल पंप का डब्बा दिखाई पड़ रहा है सामने उसके ऊपर पेट्रोल लिखा हुआ है उसके बगल में डीजल भी लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारी टेबलें दिखाई पड़ रही हैं जिसपे बहुत सारे लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं।

किसी पे फ्रैशली फ्लेम वैल्यू फॉर यू लिखा हुआ है तो किसी पे कुछ और लिखा हुआ है।

यह इस दृश्य में बहुत सारी टायरें दिखाई पड़ रही हैं।

अंदर में बहोत सारे छड़े रखी हुई है।

अंदर में दो तीन डब्बे रखे हुए हैं और बहोत सारी सीमेंटे रखी हुई हैं।

इस पर हार्डवेयर के बहुत सारे सामाल रखे हुए हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं तो कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक गेट दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे--